स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जाली लगी हुई है विंडो में--

गैरेज है गाड़ी दिखाई दे रही है जो की पूरी डैमेज हो गई है एवं वर्कर है जो इसका वेल्डिंग कर रहे है कुछ पार्ट्स रखे हुए दिखाई दे रहे है।